एक जगह का चित्र है जिसमें एक जानवर दिख रहा है।

कई सारे हरे रंग के पेड़ लगे हुए है आसमान दिख रहा है।